ग्रीन पौधे टाइप कुछ छत पर लगाए गए हैं ये एक बड़ी बिल्डिंग है इसके पास में इसके अंदर कुर्सियां रखी गई हैं जिनके ऊपर वाइट पर्दे लगाए गए हैं।

कुछ बैठने की व्यवस्था के लिए बनाया गया है उसके कार बाहर काफी हरे भरे पेड़ पौधे दिखा रहे हैं कुछ खेल कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

यह टेंपल दिखाई दे रहा है जिसके बाहर व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक पुजारी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

बड़ा दरवाजा नजर आ रहा है बाहर खुले हुए जूते नजर आ रहे हैं मंदिर के पास कुछ सीढ़ियां लगी हुई हैं वो नजर आ रही हैं इसका कलर चॉकलेटी --

यह एक बड़ा प्लेग्राउंड नज़र आ रहा है जिसमें कुछ लोग कुछ बच्चे या कुछ आदमी खेलते नजर आ रहे है।